और सामने गोलगप्पा भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे मैटर्स भी बिछाया हुआ है।

जो की बारिश की वजह से पूरा भींगा हुआ है।